और एक में दूसरे हाथ का पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ बाइक खड़ी हुई नजर आ रही स्कूटी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

नजर आ रहा है एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर के पिलर लगे हुए हैं।

लिखा हुआ है।

दरवाजा दिखाई दे रहा है भूरे रंग का टेबल दिखाई दे रहा है जिस पर बच्चे बैठकर म्यूजिक गाते हुए नजर आ रहे हैं।

चादर का कलर पर्पल और व्हाइट है एक पेशेंट लेटा हुआ नजर आ रहा है एक डॉक्टर कुछ लिखता हुआ दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का टेबल हैं।

दो हजार सात यहां द्वा लिखा हुआ नजर आ रहा है एक कंडक्टर बैठा हुआ नीली कलर की सीट दिखाई दे रही है।

ऑरेंज कलर का पिलर बना हुआ है व्हाइट कलर का बोर्ड है जिसमें लाल रंग से अनमोल लिखा है।

सामने वाइट कलर का दीवाल दिखाई दे रहा जिसमें लाल रंग का बोर्ड हैं।

एक आदमी ड्रम में बैठा हुवा नजर आ रहा हैं साढ़े सात कैटलॉग दिखाई दे रहा हैं लाईट जलती हुई नजर आ रहीं हैं।

यह मंदिर दिखाई दे रहा है ऊपर बोर्ड में श्री राम मंदिर लिखा हुआ नजर आ रहा है झंडे दिखाई दे रहे हैं लाल कलर के।

नीले और वाइट कलर का डस्टबिन रखा हुआ दिखाई दे रहा है भूरे रंग का शटर नजर आ रहा है तीन मार्बल की सीढ़ी बनी हुई है।

गाड़ी उठाने वाली गाड़ी नजर आ रही है भूरे और पीले रंग की।

और कुछ पाइप नजर आ रही है व्हाइट कलर का पिलर दिखाई दे रहा है।

पोस्टर लगा हुआ है भूरे रंग के खिड़की नजर आ रही है जिसमें ग्रे कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है।

लाइट जलती हुई नजर आ रही है एक आदमी खड़ा हु--

पानी पूरी नजर आ रहा है तीन अलमारी दिखाई दे रही हैं भूरे और व्हाइट कलर की मिरर लगा हुआ है।

कुछ लोग मछली लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यह योगा सेंटर नजर आ रहा है काँच का बड़ा सा मिरर दिखाई दे रहा है स्पीकर नजर आ रहा है जहाँ पे --

इसके ऊपर कुछ समाने रखे नजर आ रहे है और दो जने खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

येलो रेड कलर का पर्दा नजर आ रहा है पिलर बने हुए हैं और जमीन में घास लगे हुए दिखाई दे रही है और उन्नत के पेड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं।

सामने ग्रीन येलो कलर का बोर्ड --